कुछ छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। चारो साइड यहां पास--

जो की एक बहोत ही अच्छा फिनिश देता है ऑफिस को।

एक रिसोर्ट में एक स्विमिंग पूल भी है।

जोंकि एक बहोत ही अच्छी बात है सामने लाइट भी दिखाई दे--

यहां पास दो लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।